जो दीवारें है ईंट की है। लाल कलर है। पीछे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। बहोत बड़ा घना-सा और लोहे की जाली लगी हुई है। तारों की यहाँ पे --

आ ये एक-क रूम है जहाँ बड़ा सा हॉल बना हुआ है लाल कलर का नीचे कारपेट बिछा हुआ है।

अ ये एक बहोत बड़ा स्टेज है। स्टेज पर बच्चें कुड़सियों पर बैठे हुए हैं। उनके हाथ में कुछ सर्टिफिकेट रखे हुए हैं।

जाली कांच की है तो कुछ पेड़ों की परछाइयाँ दिख रही हैं यहाँ पे कांच में से पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

ये एक रोड़ है और रोड़ के उस पार बहुत सारे ओटो खड़े हुए हैं ले लोडिंग ट्रक है एक बड़ी बस भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

और खिड़की लगी हुई है लोहे कि दिखाई दे रही है एक दीवार है दीवार पे कुछ कलर निकला है कुछ जगह और कुछ लाइट के तार दिखाई दे रहे है साइड --

ये एक मम मकान दिख रहा है बड़ा सा और उसके सामने एक काले कलर की कार खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

और बगल मे उसके एक खिड़की लगी हुई है और खिड़की से रोशनी अंदर आ रही है तो दिन का समय है यहाँं पर।